ये यहां पर एक फोर व्हीलर भी है।

यह एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

भेड़ हरा कलर से तोपा हुआ है उसके सामने बॉटल दिख रहा है।

इस बिल्डिंग के सामने बहोत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दो आदमी लोग बैठे हैं।

उसके बगल में एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

इसके सामने एक ऑटो है।

घर के बगल में बहोत सारा हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

नीचे फर्श में टाइल्स लगा हुआ है।